अभी इसका नाम लिखा हुआ है लीव क्लिनिक ।

इसी ऑटो में जाने के लिए अब--

इस फोटो चित्र में हम देख रहे एक--

बोल रहा है अरे यहां पे एक क्रिश्चियन का प्रोग्राम चल रही है ये साथ सजा भी ज्यादा आच्छा किए हैं।

इस फोटो में हम देख रहे हैं अच्छा वाला कमरा।

और एक लड़का वहीं पे उनका हाथ दिखा रही है।

इसी फोटो में हम देख रहे हैं एस_बी_आई का इंटर--

ये बिल्डिंग के पा में एक मंडप है।

ये एक ऑफिशियल ऑफिसर काम कर रहे वहीं पे एक कैलेंडर है आंध्र बैंक का ये कैलेंडर है। ये एक ऑफिशियल ऑफिसर काम कर रहे वहीं पे एक कैलेंडर है आंध्र बैंक का ये कैलेंडर है।

व कलर भीं अच्छा लगता हैं और वहीं पे पेड़ और एक अ--

कच्चा रोड भी हैं वही रोड के अंदर में और कोई पार्क भी है और दूसरा आगे में अगर बगल में क्या क्या--

इस फोटो में हम देख रहे हैं कचोड़ी और मिठाई जलेबी--

और आसपास में ज्यादा ग्रीनरी देखा रही हैं।

के पास टेबुल भे है ये अच्छा वाला घर भी--

इसी में हम देख रहे हैं श्री साई बुक स्टोअर --

स्टूल रखा गया है और बूक्स थाके में सजाई कर रखा गया है उसका लाइट और एक दूसरा --

इस फोटो में हम देख रहे हैं।

रखा गया है और उसका जो ग्रीनरी है पेड़ है बड़ा अ--

छे रूम बनाया गया है उनका रोड भी बनाया गया है।

पत्रवी आशा अच्छा लगता है वहीं पे एक मंदिर लगता है।

ये यहा क्या कर रहा है कि वही पे--

आज वेस्ट सिटी ऑर ट्रेलर सिटी मे कवर किया है।

दो मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ा हैं।

ये सब लोग अ बेंच डैक्स में बैठा है।

इस फोटो में हम देख रहे है एक प्रशेसन--

दो अह सजा साज सजा है बड़ा अच्छा है यह लगता है एक मैरिज का प्रोसेशन है।

बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आस पास में वो जो--

थोड़ा बड़ा अच्छा लगता हे और पौधा--

उनका कलर वाइट और रेड पट्टी पट्टी में है।

मंडप पे दो तीन मूर्तियां देखा रही है।

ये और दूसरा मे ओ थोड़ा--

जगह का आसपास में पेड़ पौध लगा हुआ है। उनका पीछे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन हुआ है।

पर मैं लिखा हुआ है इ भो--

इस फोटो में एक ऑफिस का--

इस फोटो में हम देख रहे हैं एक बड़ा सा फील्ड --